यह एक तस्वीर है जिसमें कि हमें बीच में दो बोर्ड दिख रहे हैं एक बोर्ड पार्किंग का है और दूसरा बोर्ड --

यह एक तस्वीर किसी शहर की है जिसमें की चारों तरफ बहोत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और सड़के भी है उसे यहां की सड़क बहुत ही कच्ची है।

यह तस्वीर एक छोटे से पारक की नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक हॉस्पिटल के बाहर की है।

इस हॉस्पिटल का नाम अभिलाशी हॉस्पिटल है।

यह तस्वीर एक होटल की नजर आ रही है होटल बहोत ही सुंदर नजर आ रहा है।

चोरों के बाहर दो गाड़ी और एक ऑटो खड़ा है।

यह तस्वीर एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग के बाहर की है इस तस्वीर में हमें--

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है इस तस्वीर में हमें--